ईं तस्वीर मा जी हम देख सक्दों यखा मा एक झीलन दिखेण लगीं ते झीला का किनार मा जी हमे छकि सारा लोगन दिखेण लग्यां।